यहाँ पर पेड़ पौधों में हरी पत्तियां आ रही है।

यहाँ पे तीन लड़कियां एक रूम में सूर्य नमस्कार कर रही हैं।

तराजू भी है। उसके पास पानी है जिसमे दो में --